अ यह चित्र हमें वर्षा ऋतु का नजर आ रहा है जिसमें नदियों का पानी काफी तेज गति में बहता हुआ दिख रहा है।

काफी तेज गती में आसपास कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं धरती पत्राली लग रही है और कुछ वृक्ष भी लगे हुए हैं कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं।

वेसे किसी जंगल का है और इसमें हमें कुछ पहाड़ नजर आ रहे है बीच में कुछ घर बने हुए है बस्ती रोमा और यहां पर कई पहाड़ है पीछे की तरफ भी पहाड़ दिख रहे है।

यह चित्र हमें किसी बौद्ध मठ का लग रहा है और यहां पर आराधना की जा रही है।

और उन टाइल्स पर भूरे रंग के टाइल्स से डिजाइन बना हुआ है और ये एक बोर्ड पर ई पर्यटन लिखा है दूसरे पर आवागमन।

यह द्रश्य किसी खेल के मैदान का लग रहा है और यहा पर शायद फुटबॉल का खेल खेला जा रहा है और यह कुछ लोग बैठे है जो दर्शक है।

और पत्थरो ऊपर काफी अच्छा रंग लगा हुआ है जो शायद पानी की वजह से कुछ गुलाबी रंग लगा है कुछ पीला रंग लगा है और वहां पर एक कुत्ता हमें नजर आ रहा है सड़क पर।

ये दृश्य किसी ऊंची बिल्डिंग से लिया हुआ है किसी रोड साइड के मार्केट का जहां पर सब्जियों के और कई निजी वस्तुओं के ठेल लगे हुए हैं दैनिक वस्तुओं के--

यह चित्र हमें किसी बौद्ध संस्थान का लग रहा है सामने एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा है और दो हमें इसमे लकड़ी के खम्बे नज़र आ रहे है ऊपर छत पर डिज़ाइन बनी हुई है।

नीचे बहुत सा फैला हुआ है एक पानी का डिब्बा रखा है ये पेड़ लगा हुआ है पेड़ से एक सीधी सटाकर खड़ी की गई है बाकी मैदान में घास लग रही है।